जो कि डांस सीख रहे हैं।

यहां पे बहुत सारा सामान दिखाई पड़ रहा है।

यहां पे कपड़ा भी दिखाई पड़ रहा है।

यहां पे ए_सी भी दिखाई पड़ रहा है।

यहां पे बैलून है और दो व्यक्ति है।

और ब्लैक टी_शर्ट पहना है वह--

जोकि उसका रंग ब्लैक कलर है।

यहां पर लाइट भी लगा हुआ है।

एक लाइट का बड़ा सा खंभा है।

बैलून दिखाई पड़ रहा है।

यहां पर लाइट भी लगा हुआ है।

यहां पे शीशे का भी रखा हुआ है।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

पार्ट वन के लिए पाइप भी रखा हुआ--